यहां पर सब्जी में टोकरियों में बहुत सब्जियां रखी हैं जैसे कि शिमला मिर्च है गाजर है।

दो मीटर लगे हुए हैं और इसकी बहोत सारी तारों का गुच्छा भी बना हुआ है।

ये एक दुकान है जहां पर एक सामने दीवार पर पोस्टर जैसा लगा है।

जिस पर एक विवो बुक लिखा हुआ है और लैपटॉप बनाया हुआ है।

पिछे बड़ा सा पेड़ लगा हुआ हैं जो लकड़ियों पर कुछ कपड़े भी टांगे हुए हैं बड़ी सी बाहर घास सी भी दिखाई दे रही हैं।

कुछ लोग अंदर खड़े हैं कुछ लोग बाहर मोमबत्तियां के पास--

ये एक सामने कुछ क्रह बहोत सारे पेड़ जैसे दिख रहे हैं।

ऊपर टेबल फैन भी लगाया हुआ है।

जहां नीचे सामने एक टेबल पड़ी है क्रीम रंग का है उसका--

जो की शीशे के बेस बने हैं इसमें।

अ एक स्विचबोर्ड लगा है पीछे बैलून जैसे लगे हुए हैं।

ये एक कपड़ों का शोरूम जैसा है।

एक लड़की ने टॉप और जींस पहनी है।

ये ग्रे कलर की बोरियां एक ग्रीन और वाइट है।